जी मैं जिसमें नीचे हरे कलर की मेड बीच हुई है और बगल में काले कलर की टाइल्स लगी हुई है और बहुत सारी मशीन लगी हुई है।

जिनके पीछे कुछ आदमी लोग हैं और बगल में खिड़कियां हे खिड़कियों में कांच लगी हुई है ऊपर दीवालो में बुरे कलर का पेंट हुआ है और बहुत सारे तार लगे हुए हैं चारों तरफ--

एक ईस्टेज बना हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारी लड़कियां है जो की डांस कर रही है वह संतरे कलर की साड़ी पहनी हुई है और हरे कलर की साड़ी पहनी हुई है और नीले कलर की साड़ी पहनी हुई है।